और उन धोतियो पर नीले कलर की पट्टी है।

इस चित्र में कुछ व्यक्ति समान लेते नजर आ रहे हैं।

और इस नहर में अब्जा कुछ कंकड़ पड़ी है और कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं।

जहां पर प्रकार की तस्वीरें लगी हुई है।

यह कुछ महान व्यक्ति है जिनमें एक गांधी जी है।

और इस चित्र में एक डॉग खड़ा है इसका रंग ब्राउन कलर का है।

और इस रूम में वाइट कलर का पेंट हुआ है।

और इस पर एक नीले कलर का बैनर लगा है।

जिस पर उसे बिठाकर झुलायेंगे यह बहुत अच्छा नजारा है।

यह शटर आधे भिड़े हैं और आधे खुले हैं।

इस घर पर हल्का क्रीम का पेंट हुआ है।

इन्होंने अपने दोनों हाथ अपने आगे रखे हैं।

और यह किसी मैट पर लेटे हुए हैं।

शिवलिंग है और यहां पर एक पुजारी है।

और यहां पर कुछ पेड़ पौधे खड़े हैं।

और इस पानी में कुछ व्यक्ति नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

जोकि एक दुकान के पास है।

जिन्होंने सर पर वाइट टोपी लगा रखी हैं।

इसमें तीन बच्चे खड़े हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की कोट पहेन रखे हैं।

और उनके प्रैक्टिकल का काम उनके सामने रखा है।

जहां पर एक व्यक्ति पंचर ठीक कर रहा है।

यहां पर पिज़्ज़ा मिलता है यह उस जगह का चित्र है।